है बॉयज लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ लोग --

कुछ बना हुआ है जिसमे --

पता है ऊपर छत भी है जिसे --

नही सूखेगा और यहां बहुत सारे --

करके कचरा में लगा दिया गया है पीछे भी एक गाड़ी है जो --

और सामने से एक रोड है सामने --